औरते बड़े बड़े--

ये कुल की तस्वीर है।

ये तस्वीर है।

एक होटल में ब्लैक --

ये लड़का बीच के पास--

पार्क में काफी जुल्ले लगे हुए--

रेहड़ी और काफी फ्रूट --

लाल रोडा एंड आकाश वर्मा हैं।